ये चित्र भी एक मंदिर का है जो बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है मंदिर की ऊंची ईमा ऊंची उस पर झंडे लगे हुए हैं लाल रंग के आस-पास कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ बहुत सरे गुब्बारे लगे हुए है और एक बोर्ड पर अनमोल फुट वियर लिखा है।

पीछे हरे रंग की शेरवानीयां टंगी हुई हैं सामने काउंटर पे कुछ टाई दिख रही है।

ये पानी भी बहोत सुन्दर दिख रहा है और पेड़ लगा हुआ है। पी--

पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से बहुत सुन्दर पानी बेहता नजर आ रहा है।

ये चित्र एक बड़े मंदिर का दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज कलर का रंगा हुआ है।